जो की लाल लाल कलर के दिखायी पड़ रहे हैं और बहुत से लोग उन्हे दे रहे हैं ।

और यह बीच में बहुत ऊंचाई तक उड़ रहा है।

इस इमारत में हमें बहुत से काई पत्थर दिखाई दे रहे हैं।